झूला गोल घूमता हुआ दिख रहा है बीच में लाल कलर बड़ा खम्बा दिख रहा है जिसके झूले के पीछे भी बस दिख रहा है पीछे कुछ और झूले दिख रहे है कुछ लोग खडे़ दिखाई दे रहे हैं और वो झूला सामने गोल घूमता हुए दिख रहा है।

जो ब्लैक कलर का सोफा बनाया उसके सामने ब्लैक कलर का टेबल बना हुआ है उसके ऊपर कुछ एक बक्सा बना हुआ है जिसमें बहुत सारे डब्बे रखे दिख रहे हैं एक व्यक्ति खड़ा --

पार करने के लिए नीचे गाड़ियां जाती हुई दिख रही है दुकान वाली चद्दर और सामने बैनर लगे दिख रहे हैं और गाड़ियों पर दो व्यक्ति बैठे हुए दिख रहे है। ]

यह किसी प्रोग्राम का फोटो दिख रहा है जिसके अंदर कुछ दो भगवान की मूर्ति सामने बैठी हुई दिख रही है वो लकड़ी का कुछ सेट बना दिख रहा है पास में व्हाइट कलर के कपड़ो में कुछ कुर्सियां रखी दिख रही है।

सामने एक कारपेट बिछा है जिसमे फूल दिख रहा है दो व्यक्ति बैठे हुए हैं उनके हाथ में माइक दिख रहा है। उनके पीछे दिख रहा है पीछे दीवाल दिख रहा है दीवाल के ऊपर दो बैनर लगे दिख--

ये किसी ब्रिज किसी पुल्ल का निर्माण होता हुआ फोटो दिख रहा है जिसमे स्टाल के कुछ पाइप लगे दिखरे है नीचे नदी दिख रही है नदी में भोत पानी दिखई दे रहा है ।